रनिंग पीन करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा रंग भी है।

और बाल्टी भी है बड़ा बड़ा है और छोटा भी है।

और दुकान पे लाइट भी जल रहा है बहोत सुंदर है।

रेस्टोरेंट तो बहोत सुंदर है।

ये एक छोटा सा रूम है।

और यह बड़े बड़े लोग भी है।

घर के अंदर मीटिंग चल रहा है जो लइका लोगों का मीटिंग है।

इस मशीन का नाम है सिलाई मशीन ।

वो सिलाई मशीन का सामने जो छोटी बच्ची के लिए जो साइकल है वो वाला है।

जो ड्राम है तो उसने गाड़ी में बहुत कुछ करता है।

ये दुकान बहोत ही छोटा है।

ये है एक घर घर का बाहर जो ग्राउंड है उसमें बहुत सारा बॉक्स है बरा बरा है।

इस साइन बोर्ड का नाम है और ये फैशन लिखा है।

ऑनलाइन फॉर्म फ़िलअप और पैनकार्ड और ये ज़ेरॉक्स का दुकान है छोटा दुकान।

पूरा का पूरा गाछ है गाछ के अंदर घर है।

लड़के लोगों के लिए भी बहुत कुछ है।

और सामने एक चेयर है और स्प्राइट है।

पे बहुत सुंदर है गुहा।

और सामने भी एक दर्जा है।

इस गाड़ी का नाम है बुलरो गाड़ी।

और उसमें दो लड़का है।

एक बंदा उसका सामने जा रहा है और सामने भी एक चाल का बसता है।

इसमें छोटा सा एक टेबील भी है।

जो बस्तों में भी हैं वो भी फूल है।

और इसमें दो इंसान है जो लड़का काला काला करके--

यह एक बाहर का ग्राउंन है।

और इसमे बहोत ज्यादा है।

और भर का एक भी है।

और एक साइन बोर्ड है।

और बाहर का रा रास्ता है।

और उसमें जो ताप है ना वो वाला ताप दिखाई दे रहा है।

कलर भी बहुत सुंदर सुंदर है।

ये एक छोटा सा दुकान है अ रेस्टोरेंट है।

दिया है ब दूसरे साइड में बंदर दिया है।

ढलाई से बाउंड्री दिया है और ये रस्ता अभी बहुत सुंदर है।

लेकिन बहोत ही सुंदर है।